यहां पर बहुत सारी औरतों की भीड़ है सबने रंग-बिरंगे कपड़े पहने हुए है यहां पे सब ने हाथ में छठ वाला सूप भी लिया हुआ है।

यहां पे कुछ लोग बैठे हुए है उनके पास एक एक दोवरी में बहुत सारी मछलियां है उनके पास तराजू भी है यहां पर पीछे बहुत सारे साइकिल लगी हुई है।

यहां पर एक खिड़की है इसमें हरे रंग के परदे लगे है यहां पर दीवार पे एक फैन और एक घड़ी भी है।

यहां पर एक बड़ा सा हॉल है हॉल के ऊपर बहुत सारी लाइटें लगी हुई है।

यहाँ पर सामने एक टेंपू है टेंपू लाल रंग में है।

शीशे में कुछ लड़कियां दिख रही है सबने हरे रंग के कपड़े पहने है शीशे के ऊपर झंडा भी लगा है।